अलग अलग तरह की रिंग है और अलग अलग डिजाइन की है।

साथ में यहां पर बहुत सारा सोने का मैटेरियल रखा गया है।

इस फोटो में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

साथ मे यहां पर बहुत सारी गाड़ी-वाड़ी खड़ी हुई है और यहां पास--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

इस फोटो पे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पर दो लोग के ऊपर चढ़ रहे हैं यहां पर बहुत सारी सीढ़ी बनी हुई हैं।

यहां पस बहोत सारे घर भी बने हुए हैं साथ में यहां पर बोहोत सारे लोग ठेले और यहां दुकान भी हैं।

गमलों में अलग अलग रंग के फूल लगाए गए हैं और यहां पर कुछ लोग फूल--